इन फोटो में हम एक ड्राई क्लीनर्स दुकान को देख सकते है जिसका नाम है माँ शांभवी ड्राई क्लीनर्स और ये दुकान लोहिया नगर बेगूसराय में स्थित है।

यह फोटो ड्राईक्लीन हाउस की है जिसका नाम है प्रकाश ड्राईक्लीन यहाँ लोग अपने कपड़े को ड्राई क्लीन कराने के लिए ले आते हैं।

और इसके ऊपर एक बोर्डिंग लगाई गई है होटल युवराज डी.एक्स. जीरो माईल बरौनी डिस्ट्रिक बेगूसराय बिहार यह बेगूसराय में है ये होटल ।

यह फोटो एक लाइब्रेरी की है जहाँ स्टडी पॉइंट बनाया गया है जहाँ ढेर सारी किताबों को एक अलमारी में अच्छे ढंग से रखा गया है इसके सामने एक टेबल है।

उनके नाम पे यहां पे एक पुस्तकालय बानाया गया है।

मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो इन लाउडस्पीकरो से उसकी आवाज जाती है।

यह फोटो एक बड़े से बिल्डिंग की दिखाई दे रही है जिसमे ढेर सारी दुकाने हैं उसमे एक दुकान पिज़्ज़ा हट के.फ.सी. की है।

इस घर के जस्ट बगल में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर झंडा लगा है।

और यहाँ इस हॉल में चारो तरफ सुन्दर सुसज्जित कुर्सियाँ रखी गई हैं।